नमस्कार !
iterative methods प्रयोग करके लीनियर इक्वेशन्स को हल करने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत तक आप सीखेंगे कि:
iterative मेथड्स प्रयोग करके लीनियर इक्वेशन्स के सिस्टम को कैसे हल करते हैं
लीनियर इक्वेशन्स को हल करने के लिए scilab कोड कैसे बनाते हैं
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
उबन्टु 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और scilab 533 वर्शन
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने से पहले आपको scilab और लीनियर इक्वेशन्स को हल करने की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए
scilab के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध सम्बंधित ट्यूटोरियल्स को देखें
पहला iterative method जिसका हम अध्य्यन करेंगे वो jacobi method है
n इक्वेशन्स और n अननोन्स के साथ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया गया है
हम इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं जैसे कि x of i k+1 इज़ इक्वल टू b माइनस समेशन ऑफ़ a i j x j k j इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाइ a i i जहाँ i 1 से n तक है
हम प्रत्येक x of i के लिए वैल्यूज़ मानते हैं
फिर हम पिछली स्टेप में प्राप्त इक्वेशन्स में वैल्यूज़ को रखते हैं
हम इटरेशन को तब तक जारी रखते हैं जब तक सॉल्युशन कन्वर्ज यानि अभिसारित न हो जाये
अब jacobi method प्रयोग करके इस उदाहरण को हल करते हैं
अब jacobi method के लिए कोड देखते हैं
scilab कंसोल पर प्रदर्शित उत्तर के फॉर्मेट को स्पष्ट करने के लिए हम फॉर्मेट मेथड प्रयोग करते हैं
यहाँ e दिखाता है कि उत्तर साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए
और 20 प्रदर्शित होने वाली डिजिट्स को दर्शाता है
फिर हम निम्न मेट्राइसिस की वैल्यूज़ प्राप्त करने के लिए इनपुट फंक्शन उपयोग करते हैं
coefficient मेट्रिक्स
right hand side मेट्रिक्स
initial values मेट्रिक्स
maximum number of iteration और
convergence tolerance
फिर हम यह जाँचने के लिए size फंक्शन उपयोग करते हैं कि a मेट्रिक्स स्क्वायर मेट्रिक्स है या नहीं
यदि नहीं तो हम एरर दिखाने के लिए एरर फंक्शन उपयोग करते हैं
फिर हम जाँचते हैं कि मेट्रिक्स a diagonally dominant है या नहीं
पहला आधा भाग मेट्रिक्स की प्रत्येक रो के जोड़ की गणना करता है
फिर यह जाँचता है कि डाइएगनल एलिमेंट्स के गुणनफल का दुगुना उस रो के एलिमेंट्स के जोड़ से बड़ा है या नहीं
यदि नहीं तो error फंक्शन प्रयोग करके एरर प्रदर्शित की जाती है
फिर हम इनपुट आर्ग्युमेंट्स के साथ jacobi iteration फंक्शन परिभाषित करते हैं
a b x zero
maximum iteration और tolerance level
यहाँ x ज़ीरो इनिशियल वैल्यूज़ मेट्रिक्स है
हम जाँचते हैं कि a मेट्रिक्स और इनिशियल वैल्यूज़ मेट्रिक्स एक दूसरे के अनुरूप है या नहीं
हम x k p one की वैल्यू की गणना करते हैं और फिर जाँचते कि relative error tolerance level से कम है या नहीं
यदि यह tolerance level से कम है तो हम इटरेशन को ब्रेक करते हैं और सॉल्युशन रिटर्न होता है
अंततः हम फंक्शन को समाप्त करते हैं
अब फंक्शन को सेव और एक्सिक्यूट करते हैं
scilab कंसोल खोलते हैं
अब प्रत्येक प्रॉम्प्ट के लिए वैल्यूज़ प्रविष्ट करते हैं
कोफिशिएंट मेट्रिक्स a है स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 2 स्पेस 1 सेमीकोलन 5 स्पेस 7 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
फिर हम टाइप करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में 11 सेमीकोलन 13 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
initial वैल्यूज़ मेट्रिक्स है स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 सेमीकोलन 1 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
इटरेशन्स की अधिकतम संख्या 25 है
enter दबाएं
मानिये convergence tolerance लेवल 000001 है
enter दबाएं
हम निम्न टाइप करके फंक्शन को कॉल करते हैं
jacobi iteration ब्रैकेट खोलें a कॉमा b कॉमा xज़ीरो कॉमा m a x i t e r कॉमा t o l ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
x1 और x2 की वैल्यूज़ कंसोल पर दिखती हैं
इक्वेशन्स की संख्या भी दिखती है
अब gauss seidel मेथड का अध्ययन करते हैं
n इक्वेशन्स और n अननोन के साथ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया गया है
हम प्रत्येक अननोन के लिए इक्वेशन्स को अन्य वेरिएबल्स और उनके कोफिशिएंट्स को सम्बंधित दायें हाथ वाले एलिमेंट्स में से घटाकर दोबारा लिखते हैं
फिर हम इसे उस वेरिएबल के लिए अननोन वेरिएबल के कोफिशिएंट a i i से डिवाइड करते हैं
यह प्रत्येक दी गयी इक्वेशन के लिए किया जाता है
jacobi method में x of i k+1 की गणना के लिए x of i k+1 के सिवाए x of i k के प्रत्येक एलिमेंट का उपयोग किया जाता है
gauss seidel मेथड में हम x of i k की वैल्यू को x of i k+1 से ओवर राइट करते हैं
अब इस उदाहरण को gauss seidel मेथड से हल करते हैं
अब gauss seidel मेथड के लिए कोड देखते हैं
पहली लाइन फॉर्मेट फंक्शन प्रयोग करके कंसोल पर प्रदर्शित उत्तर के फॉर्मेट को दिखाती है
फिर हम निम्न की वैल्यूज़ प्राप्त करने के लिए इनपुट फंक्शन उपयोग करते हैं
coefficient मेट्रिक्स
right hand side मेट्रिक्स
वेरिएबल्स की initial वैल्यूज़ मेट्रिक्स
maximum number of iterations और
tolerance level
फिर हम इनपुट आर्ग्युमेंट्स a कॉमा b कॉमा x ज़ीरो कॉमा max इटरेशन्स और tolerance लेवल और आउटपुट आर्ग्युमेंट सॉल्यूशन के साथ gauss seidel फंक्शन को परिभाषित करते हैं
हम size और length फंक्शन प्रयोग करके यह जांचते हैं कि मेट्रिक्स a स्क्वायर है या नहीं और इनिशियल वेक्टर और मेट्रिक्स a अनुरूप है या नहीं
फिर हम इटरेशन्स शुरू करते हैं
हम इनिशियल वैल्यूज़ वेक्टर x 0 को x k के बराबर रखते हैं
हम x k के समान साइज़ की ज़ीरोज़ की मेट्रिक्स बनाते हैं और इसे x k p 1 कहते हैं
हम x k p 1 प्रयोग करके उस इक्वेशन के अननोन वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त करने के लिए प्रत्येक इक्वेशन को हल करते हैं
प्रत्येक इटरेशन पर x k p 1 की वैल्यू अपडेट होती है
हम यह भी जाँचते हैं कि relative एरर दिए गए tolerance लेवल से छोटी है या नहीं
यदि है तो हम इटरेशन को ब्रेक करते हैं
फिर x k p1 को वेरिएबल सॉल्यूशन के बराबर रखते हैं
अंततः हम फंक्शन को समाप्त करते हैं
अब हम फंक्शन को सेव और एक्सिक्यूट करते हैं
scilab कंसोल खोलते हैं
पहले प्रॉम्प्ट के लिए हम टाइप करते हैं matrix a
टाइप करें स्क्वायर ब्रैकेट में 2 स्पेस 1 सेमीकोलन 5 स्पेस 7 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
अगले प्रॉम्प्ट के लिए
टाइप करें स्क्वायर ब्रैकेट में 11 सेमीकोलन 13 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
हम निम्न टाइप करके इनिशियल वैल्यू वेक्टर की वैल्यूज़ देते हैं
स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 सेमीकोलन 1 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
फिर हम इटरेशन्स की अधिकतम संख्या को 25 करते हैं
enter दबाएं
अब tolerance लेवल को 000001 परिभाषित करते हैं
enter दबाएं
अंततः हम निम्न टाइप करके फंक्शन को कॉल करते हैं
g a u s s s e i d e l ब्रैकेट खोलें a कॉमा b कॉमा x ज़ीरो कॉमा m a x i t e r कॉमा t o l ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
x1 और x2 की वैल्यूज़ प्रदर्शित होती हैं
समान प्रॉब्लम को हल करने वाली इटरेशन्स की संख्या jacobi मेथड से कम होती हैं
jacobi और gauss seidel methods प्रयोग करके इस प्रॉब्लम को अपने आप हल करें
इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा:
लीनियर इक्वेशन्स के सिस्टम के लिए scilab कोड बनाना
लीनियर इक्वेशन्स के सिस्टम के अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू ज्ञात करना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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
आय आय टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद